रेड और व्हाइट कलर के बहोत सारे पर्दे भी लगे हुए हैं।

और कुछ कैंचियां भी रखी हुई हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग है और कुछ पंडित भी है।

यहां पर एक लोहे की जाली है जिससे रोशनी आ रही है।

और यहां पर पी_वी_सी पैनल से डिजाइन और यहां पर दो बड़े से पिलर --

यहां पर वेंटिलेशन के लिए दो ए_सी लगी हुई है।

यहां ढेर सारे पौधे लगाए गए हैं।

जो पौधों को तेज धूप से बचाने का काम करती है।

और एक ने लोवर और टी शर्ट और एक ने पैंट और शर्ट पहन रखा है।

बहोत सारे ब्लैक कलर के पिलर्स भी लगे हुए हैं।

और यहां पर नीचे रेड कलर की टाइल्स लगी हुई--

यह एक हिंदू धार्मिक मंदिर है और यह शिवलिंग है।

ब्लैक कलर का है और उसके ऊपर एक तांबे का सांप बैठा हुआ हैं।

सफेद कलर की टाइल्स लगी हुई है और उस पे कुछ भगवान की टाइल्स भी लगी हुई है।

यहां पर टाइल्स लगी हुई है जो ब्राउन और व्हाइट कलर की--

और यहां पर कुछ पेड़ छोटे से गमलों में भी लगे हुए है।

और यहां पर लोहे की ग्रिले भी है।

और यह दुकान रोड के किनारे लगी हुई--

यह एक कपड़े की मॉडल शॉप है।

और यहां पर एक बहुत बड़ा सा काउंटर भी है।

यहां पर एक लोहे की ग्रिल है जो भूरे कलर से पेंट --

यहाँ पर बहुत सारी चीजें बिक रही हैं।

छत पी_वी_सी पैनल से बनी हुई है।

यहां पर कुछ औरतें डांस कर रही हैं।

यह पेड़ आम के हैं यहां पर बहोत सारे पेड़ हैं।

और यहां पर एक पटरी है जिसपे जेब्रा चल रहा है और यहां पर एक बच्चा भी बैठा हुआ है और एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है।

यहां पर एक का पंखा और यहां पर बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

पे दो कंबल रखे हुए हैं और इसकी दीवाल पर वॉलपेपर है।

यहां पर एक टी_वी लगी हुई है और एक कुर्सी भी रखी हुई है।

और यहां पर बहोत बड़े बड़े लसले भी रखते हैं जो ग्रीन और रेड और ब्लू और येलो कलर के हैं।

और यहां पर एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

अवलो का ढेर लगा हुआ है जिस पे तीन लोग बैठे हुए हैं।

और यहां पर बहोत बड़े बड़े से पिलर्स हैं और बहुत सारे पाइप्स भी हैं।